एक हॉल मकान दिख रहा है उसमें बैलून्स लगे दिख रहे हैं लाइट लगी दिख रही है पेड़ दिख रहा है पौधे दिख रहे है ग्राउंड दिख रहा है हरे पेड़ दिख रहे है।

एक उसके मछली के साइड में एक टब रखा हुआ दिख रहा है ब्लू कलर का चादर दिख रहा है कंकड़ मछली को देख रहे हैं| एक अंकल बास्केट के पास खड़े हैं| एक लड़का ग्रीन टि-शर्ट में खड़ा हुआ है| एक ऑटो रिक्शा दिख रहा है| बहोत सारे ऑ --